सड़क पे कुछ गाड़ियां भी चलती हुई नजर आ रही है और आस पास हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लोग यहां पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक शोरूम नजर आ रहा हैं।

पूरा घर मुझे पीच कलर का नज़र आ रहा है और यहां छत पे मुझे टंकी भी दिखाई दे रही है।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

और कुछ रेड कलर के स्टार भी लगाए गए हैं।